नीचे में बहोत सारा चेयर रखे हुए है और सामने में मुझे बाइसिकल और कुत्ता भी दिखाई दे रहा है।

फिर मुझे एक वॉल की तरफ मुझे का नजारा रहा है फिर खिड़कियां शीशा का बनाया हुआ है।

रूम में भी मुझे दुकान दिख रहा है उधर में आदमी लोग भी दिखाई दे--

अंदर में मुझे इस हॉल कुछ कपड़े बिछा के दिख रहा है जहां में आदमी लोग बैठ के है चेयर भी दिख रहा है।

ऊपर की ओर लाइ व्हाइ जेल के है थोड़ा सा इस्टार विस्टार लगाके --

ऊपर को बहुत सारा है ऊपर की ओर मुझे लाइट बल्ब का कुछ बॉक्स दिख रहा है और यहां में जेरॉक्स मशीन भी है और कपड़ा भी मुझे दिख था है।

क्योम गेम आन चेन सब दिखाई दे रहा है आसमान भी सुंदर है जहां मे सब दिखाई दे रहा है ये दिन का समय --

इस तस्वीर में मुझे दुकान का अंदर का नजारा दिखाई दे रहा है उधर में बहोत सारा सामान रख के है अंदर में लाइट भी जला के दिख रहा है और बहुत सारा बोतल है जहां में अलग अलग सामान रखे हुए है।

हमें लाइट वाइट लगे के हैं कपड़ा वोपड़ा लगा के है।

नाली में कीचड़ भी दिखाई दे रहा है बहुत सारा लाइफ बोट भी है जंगल भी बहुत सारा है बड़ा बड़ा पेड़ है।

इस तस्वीर में मुझे लोहा वाला बेंच में कार का चक्का रखते हुए दिख रहा है उधर में मुझे कार भी दिखाई दे रहा है सामने में बड़ा सा दुकान का तरह है।

दोनों तरफ में खिड़कियां दिख रहा है फिर कर्टन लगा के हैं।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

इस तस्वीर में मुझे बहुत सारे लोग दिखाई दे रहा है। जहां में आदमी औरत बच्चे सब दिख रहे है। हाथ में मोबाइल वोबाइल पकड़ के भी दिखाई दे रहा है। मास्क वास्क पहन के है।

भी मुझे पिता का आवाज भी दिखाई दे रहा है और टीना का भी दिख रहा है।